और हमें बहुत ही हरियाल हरा-भरा सा पार्क नजर आ रहा है जो कि एकदम खाली है उसमे कोई बैठा नही है इस टाइम और त्रिकोना जैसा वो आकार लिया है और आगे की तरफ उसपे घूमता हुआ एक रोड --

ऊपर हमें एक सामने की तरफ जाता हुआ एक रोड को देख रास्ते को देख पा रहे हैं जो कि टाइलों से बना हुआ है और अ उसमें अ दोनों तरफ लगे हु वे है लम्बे लम्बे पड़े हमें दखने को मिल रहे है अ रात का टाइम होने की वजह से--

इस पिक्चर में हम कुछ लाल रंग के कुछ रेक्टेंगुलर शेप में किसी चीज़ को देख सकते है जोकि शायद ऐसा लग रहा है की आगे की तरफ कोई रस्ता है वहाँ पर रस्ता के का गेट का कुछ पिलर वगेरा है वो और हम स्ट्रीट लाइट भी --